यहां पर एक ऑफिस है इस ऑफिस में बहोत सारे गुब्बारे लग रहे हैं और ये दुकान काफी बड़ी है।

सरस्वती मां का बोरड है यहां पे बच्चे पढ़ने आते है यह काफी--

यहां पर अंडरगारमेंट भी मिलते है।

और महिलाओ का समान मिलता है यह काफी बड़ी दुकान है और यहां पर--

यहां पर बहोत बड़ा खेत है इस खेत में बड़े बड़े पेड़ हैं।